इसमें बैठा हुआ दिख रहा है जिसने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी है चेयर के ऊपर बैठा हुआ है सामने एक बेड बिछा हुआ दिख रहा है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है।

पर्सन दिख रहा है जिसने ब्लैक कलर का कुर्ता पहन रखा है व्हाइट कलर में पैजामा पहन रखा है और सामने भी एक पर्सन खड़ा हुआ दिख रहा है में सीढ़ियों के ऊपर उसने भी यहाँ ये ड्रेस सेम ड्रेस पहन रखी है एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है।